सफेद रंग का बोरा भी दिखाई दे रहा है।

दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

तथा एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

तथा पीछे बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

कुछ दुकान भी नजर आ रही है।

यह एक सैलून का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एवं दीवार पर लाइटे भी लगी हुई है।

काले तारों की सप्लाई भी दिखाई दे रही है।

जमीन पर लाल रंग का चादर भी बिछा हुआ है।

व्यक्ति का दृश्य दिखाई दे रहा है।

पीछे लकड़ी की मदद से रैक बनी हुई है।

तथा छत पर एक काला कलर का पंखा लगा हुआ हैं।

एवं सफेद रंग का पोस्टर भी लगा हुआ है।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

लोहे के रेलिंग भी नजर आ रही है।

तथा लकड़ियों की मदद से बनी हुई रैक भी नजर आ रही है।

यह एक व्यक्ति का दृश्य दिखाई दे रहा हैं।

और उसने हरा और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

सबने हरे रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

एवं कुछ सफेद पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

एवं नीले रंग का पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।